और एक पिछले के कार दिखाई दे रही है।

और अ एक रोड से कार जारी है।

और एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है।

इस चित्र में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत सारी टेबल चेयर्स लगे हुए--

इस चित्र में बहोत बड़ा सा गार्डन है गार्डन में एक लड़का चल रहा है पैदल।

पोस्टर भी लगी हुई हैं बच्चे लोग खड़े हुए हैं।

इस चित्र में बहोत बड़ा सा मैदान का सर्किल बना है गोल सा--

इस चित्र में एक बहुत बड़ा झी लाइब्रेरी का हॉल है इसमें बहुत सारे पुस्तक ही पुस्तक रखे गए हैं।

इस चित्र में बहोत बड़े से--

इस चित्र में बहोत बड़ा डी मार्ट है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा सा रेस्टोरेंट है। जिसमें बड़ी बड़ी टेबल्स और सोफे लगी हुई है।

ऊर्जा वाली लाइट लगी हुई है चारों तरफ छत के उस तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के बाहर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं। छोटे-छोटे --

छोटे से मीडियम साइज के पौधे लगे हैं और इस तरफ फूल सा--

लोहे की वायर दिखाई दे रही--

और खिड़की में रेड कलर की पर्दा टंगी हुई है।